यहाँ पर हम सब देख पा रहे हैं की एक राहुल नर्सिंग होम है हॉस्पिटल जो खड़ाऔर नीचे कांच लगा है।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

यहाँ पे हम सब देख पा रहे है की एक छोटा सा तालाब है जिसमे पानी है और अगल-बगल काफी पत्थर जैसे दिखाई दे रहे है पीछे काफी पहाड़ जैसा पत्थर दिखा रहा है ।

यहाँ पर हम सब देख पे रहे है की एक बढ़ा सा मैदान है और जिसके चारों तरफ बाउंड्री है और हमें बिल्डिंग भी सामने दिखाई दे रहा है।

व्हाइट येलो लगे हुए है और ग्रीन के पत्ते भी है रेड रोज भी है नीचे रेड कलर की कालीन बिछी हुई है बगल मे भी एक --

और पंडित जी है जो पूजा कर रहे है यहाँ पे सब फूल चढ़े हुए है बीच मे गुलाब भी रखे है ।

यहाँ पर हम सब देख पा रहे है कि एक रोड है और रोड के पीछे बड़ा सा एक नदी है और एक दम दूर मे उसपे भी ब्रिज दिखाई दे रहा है।

और तीन गुंबद जैसे बने हुए है जिस पर डिजाइन भी किया गया है अगल-बगल में पेड़ है एक साइड में और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

काफी मिट्टी दिखाई दे रही है और मी --

अलग-बगल छोटे-छोटे दुकान है जिसमे कुछ लोग आ जा रहे है और ठेले के बगल मे बाइक खड़ी है बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है पीछे भी पेड़ है आसमान भी साफ देख पा रहे --

यहाँ पर हम सब देख पा रहे हैं की एक अ जंगल टाइप का है जिसमें छोटे-छोटे घास है और बड़े पेड़ भी हैं झाड़ियां हैं कहीं कहीं।

और धुप भी आ रही है नीचे कहीं-कहीं-कहीं छाओं है और मिट्टी भी दिखाई दे रहा है नीचे साइड भी छोटे घांस भी हम देख पा रहे हैं। आसमान भी दिख रहा है।

यहाँ पर हम देख पा रहे हैं की रेलवे की पटरी है ट्रैन की और जो खाली है उसपे ट्रैन नहीं हैं ।

ये येलो कलर का है और काफी बड़े में है पीछे बड़ा-सा मैदान है आसमान भी दिख रहा है और घास भी पुल भी दिख रहा है।